देखिए कुछ है यहाँ पे स्कूल जैसा कुछ लग रहा है हमको पर नहीं पता यह स्कूल है या --

ये कुछ लिखा गया है एस_यु_के_एच_डी_ई_ओ सुखदेव पैलेस पी_ऐ_एल_ऐ_सी_ई और यह तो जगह बहोत सुन्दर है मेने कभी ऐसा जगह नहीं देखा और--

यहां पे कोई रेलवे जैसा कुछ लग रहा है यहां पर बहुत सारा पथल है एक दो तीन चार कुछ पथल टूटा गया है एक पेड़ जैसा है छोटा पेड़ है एक--